यहां पर एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें हरे रंग की छोटी-छोटी घास लग रही है। मैदान के अंदर साइकिल भी खड़ी हुई है जिनका रंग सफेद और काला है।

वही थोड़ा सा पानी भी भरा हुआ है और थोड़ी दूर मकान भी बनी हुई है जो सफेद रंग के दिखाई दे रहे है।

और मैदान में एक हरे रंग की झंडी भी लगी हुई है वही बहुत सारे पे- पेड़ भी दिखाई दे रहे है दूर-दूर जो हरे रंग के है।

इनका रंग काला सफ़ेद लाल है और वहीं थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा खम्बा भी बना हुआ है और आसमान भी है।